मुझे इस फोटो में एक शादी की फोटो लग रही है।

यह फोटो स्विमिंग पूल का है।

क्योंकि इसमें काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है।

मिठाइयां मिलती है जो उच्च रेट पर उपलब्ध।

चेयर्स तथा टेबल्स जो लकड़ी की बनी हैं इसलिए काफी सुंदर लग रही हैं।

इस पर एक बैनर भी लगा हुआ है।

यह फोटो किसी की शादी का या किसी अन्य प्रोग्राम का है।

जिसमें कुछ सोफे तथा टेबल्स रखी हुई है।

यह फोटो किसी मकान के बनते समय का लिया गया है।

जो काफी मेहनत करते हुए दिखाई --

यह रेस्टोरेंट भी काफी बड़ा है तथा जिसके ऊपर एक डी_टी_एच लगी हुई है।

यह फोटो दो पहाड़ों के बीच का है।

यह फोटो नाइट के समय का लिया गया है।

इन बसों क्या रंग सफेद है तथा बसें कुछ खाली तथा कुछ सवारियों से भरी हुई है।

यह फोटो किसी बड़े स्कूल का है।

इस मकान के बाहर काफी है तथा--

अह हरा भरा पेड़ भी लगा हुआ है।